एवं यहाँ पे दो-तीन पंखे भी लगे हुए हैं बहुत सारे गुब्बारे भी --

उ कुछ आदमी यहाँ पे बैठ के भी --